इसमें से एक ने मास्क भी लगाया हुआ है ऑटो का कलर --

येलो और ग्रीन है और एक आदमी ने भी येलो टी शर्ट डाली हुई है।

जो पूरा दिख रहा है उसने सफेद शर्ट डाली हुई है जो आधा दिख रहा है उसने --

शॉप की फोटो है जिसमें हमें बहोत सारे वॉच रखी दिख रही है।

इस तस्वीर में हमें सामने एक गांधी डेंटल क्लिनिक दिखाई दे रहा है जिसका बोर्ड लाल रंग में लगा हुआ है।

बास के डंडों पे खड़ा दिखाई दे रहा है जिसने ब्लू कलर की शर्ट डाली है।

यह हमें एक पार्क की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें लाल कलर की टाइल फुटपाथ पे बिछी दिखाई दे रही है व पीछे एक--

हमें तीन चार मोटर बाइक भी खड़ी दिख रही है वे एक साइकल खड़ी है।

यह हमें एक पार्क की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें हमें पीछे--

जिसने व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट ब्लैक शूज डाले हुए हैं स्पेक्स लगाए हुए हैं।

यह किसी छतरी के नीचे खड़ा कोई पारक की छतरी और इसके पिछे बहुत सारे--

यह तस्वीर हमें आर आर लाइब्रेरी भी दिखाई दे रही है। वह उसके बगल मे--

राइट साइड हमें एक घड़ी दिखाई दे रही है।

गड़ी के एक कोने पे हमें एक व्हाइट कलर की गाड़ी भी खड़ी दिखाई दे रही है दि--

इस तस्वीर में हमें बहुत सारी गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है।

बच्चा बैठा दिखाई दे रहा है वह--

पार्टी चल रही है एक ने रेड कलर की कैप डाली हुई है वह--

टायर पंचर की दुकान भी दिखाई दे रही है।